और दो लोग अ एक फील्ड पे भी है।

अ इस घर का कलर व्हाइट है।

इस पिक्चर में एक बहोत बड़ा अं रोड है।

और व्हाईट कलर का रूम है फैन लगा हुआ है।

जल रहा है साइड में एक बहोत बोर्ड है और आगे में भी एक बिल्डिंग है।

इस पिक्चर पे बहोत बड़ा सा मंदिर है।

एक बहुत बड़ा रास्ता रास्ते जा रहा है उसमें उस रास्ते पे सामने एक कार खड़ा है।

अंदर बहुत सारे सामान भी है।

व्हाइट कलर के घर है बहोत सुंदर लग रहा है।

और अह एक आदमी भी बैठा हुआ है।

बहुत डब्बे में रखा गया हैं और रेड कलर के जो हार्ट वाले टैडी वो टंगा हुआ है।

इस पिक्चर पे एक आदमी और एक छोटे बच्चे हैं जो पानी के अंदर खड़े हुए हैं।

सात आठ न लोग हैं और एक बच्चा है।

और सामने भी अह कुछ चेयर बेंच पड़ा है पीछे भी चेयर पड़ा है।

और साइड में एक गाड़ी खड़ा हुआ--